तस्वीर मे बहुत सी लडकिया नजर आ रही है जो नृत्यकला कर रही है।

इस तस्वीर मे आसमान दिख रहा है झाड दिख रहे है पार्क दिख रहा है जिसमे कही सारे झूले लगे हुए नजर हा रही है और उन झूलों पर कुछ बच्चे खेलते हुए नजर हा रहे है।

तस्वीर मे आसमान दिख रहा है झाड दिख रहे है एक बड़ा सा टॉवर दिख रहा है जिस पर लाल बत्ती जल रही है। ऊपर की तरफ --

इस तस्वीर मे आसमान दिख रहा है घर दिख रहे है दो हिरण नजर आ रही है और एक बड़ा मैदान नजर आ रहा है।

तस्वीर में आसमान दिख रहा है झाड़ दिख रहे है एक इमारत दिख रही है और एक जील दिख रही है जील मे एक लड़का नजर आ रहा है।

इस तस्वीर मे एक धबधबा दिख रहा है और एक दिख रही है झील के बीच मे एक पत्तर पर एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है कुछ आदमी खड़े हुए नजर हा रहे है।